यह एक सोनपुर का मेला लगा हुआ हैजिसमें लोग आकर के एंजॉय कर रहे हैंदेख रहे हैं।

बीज भी बोया गया है जिसमें लोग--

लोग लेते हैंऔर इसको खा कर के तंदुरुस्त रहते हैं।

यह एक पेट्रोल टंकी यहां पे डीजल पेट्रोल --

और यह एक रोड पर हैऔर--

टैम्पू भी नजर आ रहा है यहाँ पे एक फ़ास्ट फूड का दुकान भी है कार भी है बाइक भी है।

और नीचे फर्श भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है डिजाइन भी काटा हुआ है अलग-अलग तरह का लाइट है।

और माइक पे एक इंसान बोल रहा हैऔर लाइट है पर्दा है।

यहाँ एक फुट जंगल दिखाई दे रहा हैजो कि--

यह एक कैबिन नजर आ रहा हैऔर यह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा हैऊपर से एसी भी है।

यहाँ एक पोस्ट बैंक है जो लोग आए हुए हैंयहाँ पे पोस्ट बैंक में पैसा निकालने के लिए--

कटोरा भी है लोटा भी हैऔर चीपा भी हैऔर कुछ लोग--

यह एक रूम है इसमें सोफा सेट और टेबल--

और नीचे का फर्श बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहां एक गाड़ी के सर्विसिंग के लिए खड़ा किया गया है।

और एक लड़का जो हैगाड़ी का सर्विसिंग पानी से धो रहा है।

यहाँ पे दो-तीन तरह का बिल्डिंग नजर आ रहा है बिल्डिंग के चारों तरफ--

पोल भी है पोल से लाइन का भी व्यवस्था मिला हुआ है।

रनिंग करने के लिए आते हैं।

मार्केट में एक लड़का जा रहा हैनीचे के--

और यहाँ पे गल्ली भी नज़र आरा ।

जो कि बहुत ही सुंदर- सुंदर है।

यह एक गार्डन हैऔर अगल-बगल में पेड़ भी नजर आ रहा हैऔर सामने एक पेड़ है।

जो बहुत ही सुंदर हैऔर बगल में फूल भी है एक से एक अलग-अलग से रोड भी नजर आ रहा हैऔर यह एक सुंदर सा गार्डन है।

यह एक जेसीबी हैजो कि पानी में डूब गया हैबालू के खादान में--

यह एक लग रहा हैकि शादी का प्रोग्राम है यहाँ अलग-अलग प्रकार के लाइट लगे हुए हैं।

लेकर के कुछ लोग बाइक से हैं बैठे हुए हैं बगल में एक मकान बन रहा है लाइट भी लगा हुआ है।

पांच लोग हैं एक लड़का हैजो कि स्टोमन में से कुछ निकाल रहा है बाकी लोग कॉपी निकाल रहे हैं बुक निकाल रहे हैं।

और यहाँ एक गेट भी हैऔर नीचे का फर्श भी अच्छा दिखाई दे रहा है।

यह एक लड़का पानी का नजारा ले रहा है और यहां पे एक नाव भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग पानी से निकल कर के जा रहे हैं।

यह एक होटल नजर आ रहा है जहां पे टेबल चेयर‌ कुर्सी --

और पंखा भी हैऔर अलग-अलग तरह का लाइट भी है बोर्ड भी है और पिक्चर भी लगाया हुआ है।

और ये चैट पे कुछ लोग देख रहे हैं।

और यहां पानी बहुत ही उफान मार रहा है कुछ चिड़ियां --

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

यहां एक बिल्डिंग भी है और बगल में रोड भी है।

अलग-अलग तरह का इसमें डिज़ाइन काटा हुआ है।

यहां पे एक भारत का मोटर वर्कशॉप है बाइक भी है .